और सामने एक काँच लगा हुआ है उसके सामने एक कार है वाइट कलर की एक स्कूटी रखी हुई है कुछ बाइक्स रखी हुई है कुछ बिल्डिंग्स है।

और इसके काच ब्लू कलर के और टायर ब्लैक एंड वाइट कलर के --

लगी हुई है सामने एक एल.सी.डी. लगी हुई है यहाँ पर कुछ एसिया भी लगी हुई है।

और नीचे कुछ टूल्स पड़े हुएं हैं और यहाँ पर आइट साइड दरवाज़े पड़े हुए हुएं हैं वाइट कलर के --

और एक यहाँ पे नंदी जी भी बैठे हुए है सामने--